सामने एक रूम दिखाई दे रहा है रूम मे कुछ आलमारी बनी हुई है।

उस गेट के बीच में से एक मंदिर सा दिखाई दे रहा है।

उस बेड के ऊपर एक ब्लैक कलर का गद्दा और लाल रंग की चद्दर डली हुई है।

सामने एक परचून की दिखाई दुकान दे रही है।

सामने एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

सामने एक बिल्डिंग है बिल्डिंग का कलर ग्रीन एंड ऑरेंज कलर का है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

कुछ रेड कुछ ब्लू है और उसके अंदर कुछ पंखे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग का कलर पिंक है और उसके सामने एक बिल्डिंग के सामने एक छोटा सा पोस्टर लगा हुआ है।